मुझे ये कप केक का ट्रे दिखाई दे रहा है | इसमें अलग अलग से कप केक दिखाई दे रहे हैं |आइसक्रीम सॉफ़्टी एंड बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है।

कुछ बाइके दिखाई दे रही है कुछ चेयरे दिखाई दे रही है और कुछ बसों का कलर यलो कलर का है और कुछ पेड़ ग्रीन कलर ।

मुझे एक यह पैलेस दिख रहा है जहाँ पर ये तीन मजलिका का है इस में पिक कलर का दरवाजा दिख रहा है और ओरेज कलर की इसमें लाइनिंग दिख रही है और स्टिल की अ- ग्रिल दिखाई दे रही है।